यह मंदिर है कुछ लोग खड़े हुए है आसमान है।

यह एक क्लासरूम है दीवार पे कुछ बोर्ड लगे हुए है।

यहाँ पर एक गेट लगा हुआ है दीवार पर एक बोर्ड लगा हुआ है एक डस्टबिन रखा हुआ है।

ऊपर लाइट्स लगी हुई है कैमरा लगा हुआ है।